और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कमर पे हाथ रख कर।

जिस पेट्रोल पंप के साइड में तीन कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

उसके साइड में बी_आर होंडा लिखा हुआ व्हाइट कलर से।

ट्रक के अंदर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

किताबों की दुकान के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसका मुंह ब्लर है।